पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

अ कुछ भी दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

बादल दिखाई दे रहा है। कलर व्हाइट और ब्लू है।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

मूर्तियां टांग के रखी हुई है और यहाँ पे एक से पॉलिथीन भी रखी हुई है और कुछ मूर्तियां --

यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है उसपे दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे ब्लू कलर की --

के यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए है और यहां पे बहुत सारी सीटें भी रखी हुई है।

बहुत सारी लाइटे दिखाई जलती हुई दिखाई दे रही है और चद्दर सीट भी दिखाई दे रहा है। यहा पर बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं।

यहां पे रोड दिखाई दे रहा है। यहां पे एक पाइप भी पड़ी हुई है। इसमें से पानी पौधों में डाला जा रहा है।

यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है। जिसपे ब्लैक और रेड कलर के चद्दर डली हुई है। यहां पर माइक वगैरह भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगे हुए है।